और एक तराजू मे कुछ बटखरे हैं एक बड़ी सी मछली दिख रहा हैं उसके अन्दर और छोटे-छोटे मछली हैं एक बूढ़ा व्यक्ति जो हैं चादर लपटा हुआ हैं दूसरा व्यक्ति गमछा पहन के बैठा हुआ हैं।

एक व्यक्ति की मशीन की माध्यम से ईलाज हो रहे है एक व्यक्ति चेक कलर का पहने है शर्ट और लेटा हुआ है एक तकिया दिख रहा है।